यहां पर मुझे एक खुला हुआ हॉल का एरिया नजर आ रहा है।

यहां पर मुझे एक फोटो का स्टूडियो नजर आ रहा है।

जो कि हल्के बैगनी कलर का है और उसके पर्दे--

पीछे की तरफ मुझे कुछ और भी फूल दिख रहे--

यहां पर मुझे एक किराने के शॉप की कुछ भाग नजर आ रही है।

यहां पर मुझे एक ढाबा का एरिया दिख रहा हैं।

और मुझे एक आदमी भी नजर आ रहा है जो जा रहा है।

जो कि हरे कलर के ब्लू कलर के येलो कलर के और पिंक कलर के है।

और रात का वक्त दिख रहा है और कुछ लोग खड़ा नजर आ रहा--

यहां पर मुझे एक सोनार का दुकान दिख रहा है।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

और मुझे यहां पर एक मोर भी नजर आ रहा है।

जो कि हल्की बैंगनी और सफेद कलर के कपड़ों से सजा हुआ है।

यहां पर मुझे एक बार्बर का शॉप दिख रहा है।

पीछे के तरफ मुझे बहोत बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

फूल के कलर मुझे रेड येलो और पिंक नज़र आ रहे हैं और मुझे एक बच्ची और कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।